और शीशा लगा हुआ है बीच से मेन है जगह।

यहाँ पर बहुत से कार सब लगी हुई है।

एक सैलून है इसमें एक लड़का बैठा हुआ है जो नया कटिंग का जो है अपना केश बनवा रहा हैं।

ऊपर तक ले गया है लेकिन अभी काफी बनना बाकी है।

ई पेट्रोल पंप है यहाँ पर जो है बस ट्रक --

ये विवाह भवन है। यहाँ लोग जो है शादी उदी के लिए जो है अपना व्यवस्था करते हैं। यहाँ आ कर के जो है इसको बुक करते हैं और यहाँ पे शादी विवाह होता है।

नेट वगैरा जो है क्लियर होता है इस टावर से।

ए यहां पर रहने का भी जगह है सारा चीज सारा व्‍यवस्‍था है बाहरी लोगो के आने पर --

सदस्‍य लोग है अपना जो है उसमें पूजा पाठ करते है दोनों टाइम ।

लग रहा है कॉम्‍पीटिशन वगैरह का एक्‍जाम जो है हो रहा हैं।